इस ईमेज में लोहे से बने बोहोत सारे--

अरे अलग अलग जगह जाने के लिए रास्ते हैं बहुत सारे लंबे लंबे--

और सभी लोग हाथ जोड़े खड़े हुए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं।

पेड़ पौधे काफी सुंदर दिखाई दे रहे हैं यहां का बिल्डिंग भी काफी सुंदर दिखाई दे--

यहां एक पोस्ट खत डालनेका है एक बॉक्स है।

जो उनको कुछ समझा रहे हैं सभी पुलिस वाले बहुत अच्छे दिख रहे हैं अपने ड्रेस कोट में हैं जो काफी सुंदर दिखाई दे रहे हैं।